यहां पर नीचे एक टायर भी रखा दिखाई दे रहा है।

वह दो व्यक्ति नीले कपड़ो में नजर आ रहे है।

वे यहां एक वायलेट कलर की स्कूटी भी नजर आ रही है।

यहां पर पाइप सीधे सीधे रखे दिखाई दे रहीं हैं।

पीछे हरि झाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

व एक वी के गोयल का बोर्ड भी लगा दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे छोटे छोटे बॉक्स पे अह इंग्लिश सिटे अह रखी दिखाई दे रही है।

यह एक गार्बेज को शो करता हुआ नजर आ रहा--

साथ में प्रकृति से रिलेटेड एक नोटिस भी लिखा नजर आ रहा--

यहाँ पर एक बाइक पर दो व्यक्ती सवार भी नजर आ र--

ये तस्वीर एक न्यायिसी परिसर की नजर आ रही है।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

ये तस्वीर एक ऑफिस की दिखाई दे रही है।

यहां पर सफेद रंग के गमले भी दिखाई दे रहे हैं मैं यहां पर दो--

ए टू सिक्स जीरो जीरो लिखा है।

यहां नीचे बहोत सारे टायर से छपी मट्टी नजर आ रही है।

यहां पर एक दीवार पर पोस्टर लगा दिखाई दे रहा है।

पीछे बहोत हरे भरे घने पेड़ दिखाई दे रहे है।

दीवार पर पीला पेंट हो रखा है।

तीन बॉटल दिखाई दे रही है।

यहाँ लोगों की बहोत सारी भीड़ दिखाई दे रहीं हैं।

ये तस्वीर एक स्विमिंग पूल की नजर आ रही है ऊपर एक लाल रंग का झंडा भी नजर आ रहा है।